सामने एक कुर्सी दिख रही है जिसका रंग लाल है जो प्लास्टिक की है जिसके पीछे एक मेज रखी हुई है जिसपे सफेद कपड़ा पड़ा हुआ है।

एक ने मास्क लगाया हुआ है एक पुरा उपर से नीचे तक कवर है वाइट रंग के कपड़े से।

और सामने एक दुकान है जिस पर महालक्ष्मी वस्त्रालय एंड रेडीमेड --

और हिंदी में द एफ.एम. मार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर जो नीचे शटर बने हुए हैं शटर बंद है।

और इसलिए एक ट्रैक सूट पहना हुआ है जो काले स्लेटी कलर की है और वो फर्श पर खड़ा हुआ है और फर्श का रंग जो है वो मटमैला है।

जिसके पीछे ऐ.सी. लगी हुई है और वहाँ पे एक स्कूटी भी खड़ी हुई है |

इसके पीछे ये पेड़ लगे हुए हैं पेड़ का रंग हरा और भूरा है पास में एक मकान बना हुआ है जो हरे रंग का --

जो ईटो से बनी हुई जिसकी सरिया बाहर निकली हुई है जिसका रंग हरा और गुलाबी है नीचे एक हरा टीन शेड पड़ा हुआ है।

इसका शीशा भी दिख रहा है इसके पास में झिल्ली पड़ी है।